नमस्कार gchempaint में analysis of compounds के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
आणविक molecular प्रासंगिक menu
अणुओं को mol format में सेव करना
एक अभिक्रिया को जोड़ना और edit करना
अभिक्रिया के arrow पर अभिकर्मक और अभिक्रिया की conditions जोड़ना
अभिक्रिया के अणुओं को 3d में बदलना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
आपको internet connectivity की भी आवश्यकता होगी
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको gchempaint के साथ परिचित होना चाहिए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
मैंने एक नयी gchempaint window खोली है
use or manage templates tool पर click करें
नीचे templates tool property पेज खुलता है
templates drop down button पर amino acids पर click करें
सूची से alanine alanine select करें
alanine alanine का structure templates property पेज पर लोड होता है
structure पर click करें और इसे load करने के लिए display area पर click करें
अब मैं alanine alanine अणु के प्रासंगिक menu के बारे में समझाउँगी
अणु पर right click करें
एक menu खुलता है
मॉलिक्यूल select करें; इसके साथ एक प्रासंगिक menu खुलता है
प्रासंगिक menu भिन्न menu items रखता है जिनके बारे में मैं बताऊँगी
nist webbook page for this molecule
pubchem page for this molecule
open in calculator
nist webbook page for this molecule पर click करें
alanine alanine का nist वेब पेज खुलता है
webpage alanine alanine के बारे में सारी जानकारी प्रदर्शित करता है
gchempaint editor पर वापस आते हैं
pubchem page for this molecule खोलने के लिए alanine alanine पर right click करें
इस webpage पर alanine alanine structure पर click करें
एक नया वेबपेज 2d structure और 3d conformer tabs के साथ प्रदर्शित होता है
alanine alanine को 3 डाइमेंशन्स में देखने के लिए 3d conformer टैब पर click करें
प्रदर्शित 3d structure पर click करें
यह structure को ऊपर और बाईं ओर कुछ controls के साथ एक अलग window में खोलता है
structure को भिन्न दिशाओं में घुमाने के लिए rotation icon पर click करें
उसी पेज पर hydrogens प्रदर्शित करने के लिए h icon पर click करें
ये hydrogens हैं
एक बार फिर gchempaint window पर जाएँ
alanine alanine पर right click करें open in calculator विकल्प चुनें
chemical calculator window खुलती है
यदि नहीं तो जैसा overview tutorial में करते हैं कृपया synaptic package manager synaptic package manager उपयोग करके इसे संस्थापित करें
इस window पर नीचे दो tabs हैंकॉम्पोजीशन और isotopic pattern
कॉम्पोजीशन टैब्स निम्न components रखती है
formula
raw formula raw formula
g mol1 gram moleinverse में मॉलक्यूलर weight
compound की elemental mass percentage analysis analysis
isotropic pattern टैब पर click करें
यह आणविक भार पर पीक के साथ इस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम ग्राफ दिखाता है
एक नियत कार्य की तरह 1 टेम्पलेट्स सूची से अन्य एमिनो एसिड्स सेलेक्ट करें
2 उनकी कॉम्पोजीशन और isotropic pattern प्राप्त करें
मैंने एक नयी gchempaint window खोली है
अब 13butadiene structure बनायें
add a chain tool पर click करें
chain carbons जोड़ने के लिए chain पर click करें और इसे खींचें
add a bond tool पर click करें और double bond बनाने के लिए पहली और तीसरी स्थितियों पर click करें
परमाणुओं को दर्शाने के लिए प्रत्येक स्थिति पर right click करें
atom पर click करें और फिर display symbol पर click करें
1 3butadiene 2 2d structure को 3 2d structure में बदलने के लिए tool bar पर सेव icon पर click करें
save as dialog box खुलता है
file type क्षेत्र में mdl molfile format select करें
file का name 13butadiene type करें
desktop पर सेव करने के लिए desktop select करें
फिर सेव button पर click करें
वैकल्पिक रूप से आप सीधे mol या mdl extension के साथ भी file सेव कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप फाइल का नाम 13butadiene mol या mdl type करें
सेव button पर click करें
structure को 3 डी में देखने के लिए अणु पर right click करें
open with molecules viewer विकल्प select करें
यह 3d में 13butadiene है
ध्यान दें हम structure में कोई बदलाव नहीं कर सकते
structure को घुमाने के लिए cursor को structure पर रखें mouse से पकडे और खींचें
एक नियत कार्य की तरह benzene structure को 2d से 3d में बदलें
अब रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया की conditions बनाना सीखें
यह क्रमशः ethene और इथेनॉल बनाने के लिए ethyl chloride की alcoholic potassium hydroxide और aqueous potassium hydroxide के साथ रासायनिक अभिक्रिया है
मैंने एक नयी gchempaint window खोली है
सबसे पहले ethyl chloride structure बनाते हैं
add a chain tool पर click करें
display area पर click करें
परमाणु प्रदर्शित करने के लिए chain पर bond की पहली और दूसरी स्थितियों पर right click करें
current element drop down arrow button पर click करें
table से cl select करें
add or modify an atom tool पर click करें
bond की तीसरी स्थिति पर click करें
ethyl chloride का structure बन गया है
add or modify a group of atoms tool पर click करें
display area पर click करें type करें alc koh
फिर से click करें और type करें aq koh
add an arrow for an irreversible reaction tool पर click करें
आप arrow length बदल सकते हैं यहाँ उपस्थित scroller उपयोग करके
मैं arrow length 280 तक बढ़ाउंगी
ethyl chloride के समीप display area पर click करें
ethyl chloride के नीचे click करें
mouse को पकड़ें और arrow को नीचे की ओर घुमाएं
selection tool पर click करें
alcoholic potassium hydroxide alc koh को पहले arrow के ऊपर स्थित करें
aqueous potassium hydroxide aq koh को दूसरे arrow के ऊपर स्थित करें
alcoholic potassium hydroxide alc koh select करें
arrow पर right click करें एक sub menu खुलता है
arrow select करें और attach selection to arrow पर click करें
arrow associated शीर्षक के साथ dialog box खुलता है
role drop down सूची पर click करें
सूची से catalyst catalyst select करें close पर click करें
यह जांचने के लिए कि alcoholic potassium hydroxide alc koh catalyst की तरह जुड़ा है या नहीं arrow को खींचें
प्रक्रिया को aqueous potassium hydroxide aq koh के साथ भी दोहराएं
catalyst की तरह जुड़ा है या नहीं देखने के लिए इसे खींचें
selection tool पर click करके ethyl chloride structure select करें
copy के लिए ctrl + c दबाएं और structures को paste करने के लिए ctrl + v दबाएं
खींचकर structures को उचित स्थान पर स्थित करें
अभिक्रिया में ethyl chloride alcoholic potassium हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करके ethene देता है
ethyl chloride ऍक्वस potassium hydroxide से प्रतिक्रिया करके ethanol देता है
ethene प्राप्त करने के लिए इरेज़र tool पर click करें और ethyl chloride के cl bond को हटायें
इथेन बनता है
निश्चित कर लें कि tool box में current element carbon है
add a bond tool पर click करें और double bond प्राप्त करने के लिए bond पर click करें
ethene बनता है
ethanol प्राप्त करने के लिए keyboard पर o दबाएं
add or modify an atom tool पर click करें
और फिर ethyl chloride के cl पर click करें
अब अभिकारकों और उत्पादों को 2 डी से 3 डी में बदलें
एक नयी file खोलें ethyl chloride copy करें और इसे नयी file पर paste करें
सेव button पर click करें
सेव एज़ dialog box खुलता है
file का name ethyl chloride mol type करें
desktop पर file सेव करने के लिए desktop पर click करें
सेव button पर click करें
इसी प्रकार ethene को नयी file पर copy करें
ethene mol की तरह सेव करें
ethanol को नयी file पर copy करें
ethanol mol की तरह सेव करें
मैंने अपने desktop पर पहले ही files सेव कर ली थीं
मैं current window को छोटा करुँगी
और मैं desktop के उस folder पर जाउंगी जहाँ मैंने files सेव की थीं
compound 3 डी में देखने के लिए file पर right click करें open with molecules viewer विकल्प चुनें
इसी प्रकार मैं सारी files molecules viewer में खोलूँगी
compounds को 3 डी में देखें
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा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
nist webbook page for this molecule
pubchem page for the molecule
chemical calculator उपयोग करके compound का आणविक भार ज्ञात करना
अणु के mass spectrum का graph graph करना
अणु को mol format में सेव करना
अभिक्रिया के arrow पर अभिक्रिया की conditions और अभिकर्मक जोड़ना
एक अभिक्रिया को जोड़ना और edit करना
अभिक्रिया के अणुओं को 3 3d structures में बदलना
एक नियत कार्य की तरह
निम्न रासायनिक अभिक्रिया बनायें: 1 propene c3h6 c
benzene और chlorine clcl अणुओं की anhydrous aluminum chloride alcl
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस url पर उपलब्ध video देखें